ये एक हॉस्पिटल है एंड ये जनरल वॉर्ड है इसमे एक व्हाइट एंड ब्लू कलर का बेड पड़ा हुआ है।

सर्विस सेंटर हैं यहाँ गाड़ी ठीक हो रही है गाड़ी का कलर जो है वो मैरून हैं और उसके पास जो खंबे हैं वो रेड कलर में हैं नीचे टायर पड़ा है फ्लोर का कलर भी ब्लैक नजर आ रहा है।

ये बर्थडे के लिए तैयार किया गया है। कार्टून्स भालू के कार्टून्स बने हुए है से नजर आ रहा है किसी बर्थडे बच्चे का बर्थडे है जिसमे बोहोत सारे बलूंस लगाए हुए हैं।

फ्लोर उसका ब्लैक कलर का है वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक मेंस पार्लर है यहां पे जो चेयर है वो रेड एंड ब्लैक कलर की रखी गई है।

ये एक नदी है जिसमें बोट चल रही है नाव चल रही है और काफी सारे लोग बैठे --

यहाँ पे व्हाइट कलर के पाउच रखे हुए हैं।

नदी है बोहोत बड़ी आस-पास अ ब्लैक कलर नदी के पानी का ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है।

ये एक रोड है जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है साइड वाले ग्रीन है और उस साइड वाले सूख गए है।

आ ये वाटर पार्क है तीन दोस्त हैं जो ब्लैक कलर की ड्रेस पेहेने हुए है टी-शर्ट ।